एक इलेक्ट्रिक शियन का दु इलेक्ट्रिक का दुकान है जिसमें बहुत सारे पंखे टंगे हुए हैं।

और एक खिड़की है और एक अ कांच का दरवाजा है।

एक मार्केट है जिसपे लिखा है ओम स्वीट्स एंड हॉस्पिटल मैरेज हॉल रेस्टोरेंट --

एक पेंट का दुकान है जिसमें बहोत सारे रंग-बिरंगे पेंट रखे हुए हैं।

चार चेयर रखे हुए रखे हुए हैं ये काले कलर के जिनके सीट लाल रंग के हैं।

एक ठेकेदार खड़ा है जोकि फोन पर बात कर रहा है एक सीढ़ी लगा हुआ है उसके ऊपर एक --

एक लड़की अपना नृत्य दिखा रही है और वह एक मंच पर एक बड़े मंच पर नाच रही है।

एक कार्यालय है जिनमें बहोत सारे लोग लंबे लाइन लगे हैं।

बहुत सारे मछुआरे हैं जो मछली पकड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा फंदा उन्होंने पकड़ रखा हुआ है जिनमें बहुत सारी मछलियां हैं।

एक बहोत सुंदर घर है दो मंजिला घर है उसके ऊपर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

बहोत सारे लाइट्स है फर्श पर टाइल्स लगा रखा है।

और एक बहोत बरा बोर्ड लगा रखा है दो मंजिला इमारत--

एक बहोत बड़ा मैदान है जिनमें बहोत सारे लोग आ जा कर रहे हैं बहोत सारे--

उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं बहुत बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं एक पीछे घर है।